पीली कलर की दीवाल पर छपेद कलर का बैनर नजर आ रहा है जहां पर प्लस का निशान बना हुआ है और डॉक्टर विशाल आनंद लिखा हुआ है।

फर्श टाइल्स लगे हुए हैं लकड़ी का कबर्ड बना हुआ है जो काफी लंबा है। उपर कुछ ए.सी. लगी हुई है एक बोर्ड लगा हुआ है और कुछ मशीनें रखी हुई हैं जो शायद देख कर लगता है की डॉक्टर की काम --

यहाँ हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है जहाँ की दुकानों का कलर सफेद है एक घड़ी टंगी हुई है यहाँ पर एक गेट खुला हुआ है।

यहां पर साइड मे एक लेपटॉप रखा हुआ है जो कांच के अंदर रखा हुआ है यहां पर लेफ्ट साइड मे एक पोस्टर लगा हुआ है जो की थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहां पर फोनपे पेटीएम के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं।

हमे यहां एक बहुत बड़ी एल.ई.डी. आ रही है जहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है यहां पर कांच के बहुत सारे गेट लगे हुए है।

यहां हमें एक मैदान नजर आ रहा है। सामने देखकर लगता है कि कोइ यहाँ पर हमें लंबे-लंबे पेड़ नज़र आ रहे हैं जिनकी पत्तियां भी ऊपर की ओर उठी हुई हैं और नुकीली पत्तियां हैं।

यहाँ हमें कुछ फल दिखाई दे रहा है जो की लाल कलर के है यहाँ पे जो हरी पत्तियों में लगे हुए है यह दखने में चुकंदर की तरह दिख रहे है ये मिट्टी में लगे हुए है जो मिट्टी काली और लाल कलर की है यहाँ पर झाड़ियाँ भी हमें नजर आ रही हैं।

लोगो को दिखाई दे रहा है और आसमान का रंग भूरा और काला और हरालाल है और हीया पे हमें हरे पत्तियां दिखाई दे रही है।

हमें क्यूसार ट्यूटोरियल का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर हमें पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड भी नजर आ लगा हुआ आ रहा है जिसे देख कर लगता है की पंजाब नेशनल बैंक है क्यूंकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का लोगो भी लगा हुआ है।